कुछ आदमी कुछ औरत और कुछ बच्चे दिख रहे हैंएक साइकिल दिख रहा हैं ऊपर खुला आसमान दिख रहा हैं पीछे कुछ पेड़ दिख रहे हैं एक गाड़ी दिख रहा हैं।

तस्वीर में सामने एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है मंदिर के दरवाज़े का रंग लाल है।

तस्वीर में एक बुद्धा मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में एक बुद्धा मूर्ति भी दिखाई दे रही है।

तस्वीर में सामने एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है। मंदिर का लोहा का दरवाज़ा दिख रहा है। उसके बगल में ही एक पूजा का पंडाल दिख रहा है। उसके सामने बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

तस्वीर में सामने एक जैन मंदिर दिख रहा है मंदिर के सामने झंडे दिख रहे हैं पीछे भी बहुत सारे झंडे दिखाई दे रहे हैं ।

मज़्जिद के सामने एक छोटा सा रास्ता दिख रहा है। हरे भरे घास दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।